एक तस्वीर है जिसमें एक स्कूल के बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है।

वहां पर यह लॉकर्स भी बहोत पुराने हैं जिन पर रंग भी पड़ा हुआ है।

ऊपर एक ब्लैक कलर का भी है और एक एग्जॉस्ट फैन भी वहां पर है।

इसके साइड में एक हट भी देकर है।

इसके आगे बाइक्स भी बहोत सारे हैं और एक सफेद रंग की गाड़ी है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके बाहर यूनियन बैंक भवन लिखा हुआ है।